ये बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है क्योंकि यहां पर एक प्लेट रखी हुई है जो कि काले रंग की प्लेट है और उसमे बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है और साथ में ही रायता भी रखा हुआ है।

टेबल के साथ दो कुड़सीया लगी हुई हैं जिसमें की अ दो लोग बैठे हैं और ये खा रहे हैं।

सामने ये एक जिम के शीशे में से कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

ये एक बहुत ही अह पानी वाली तस्वीर है जहां पर बहुत ही ज्यादा पानी--

उसी के साथ ऊपर दीवार के ऊपर लेंटर के ऊपर--

डॉक्टरों की बाहर तस्वीर लगी हुई है सामने ही एक--

और ऊपर दीवारों के ऊपर कुछ लाइटें भी बल रही हैं।

उसी के साथ है कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जो की--

और ऊपर की तरफ यह बहोत ही बड़ी धर्मशाला है।

ये एक स्कूल के बाहर की तस्वीर है जो की एक बार की तस्वीर है।

मैरिज की तस्वीर हैं जहां पर कुछ फोटो ग्राफर मैरिज में फोटो खींच रहे हैं।

सामने कुर्सी पर बहोत लोग बैठे हैं कुर्सी के आस पास में बहोत लोग जोकि खड़े भी हुए हैं।

कुछ लोग खड़े होकर तस्वीर खींचा रहे हैं।

और यह उपर से कुछ तारे भी--

यहां पर एक अह बच्चा बैठा है जो कि झूले के ऊपर--

कुछ लोग खड़के कुछ बात कर रहे है और सामने ही --

एक मोटरसाइकिल की एजेंसी है जिसमें कि लोग मोटरसाइकिल की सर्विस है।

और उसके साथ ही एक सिक्योरिटी गार्ड वाला खड़ा है।